इनको हम अपने कर सकते हैं।

इस पर हम अपने लाइफ के कुछ इम्पोर्टेन्ट पल बिताते हैं जैसे खुशियाँ गम और आदि थैंक यू ।

इस फील्ड में हमें कई अनेक चीज़े मिलती हैं जैसे फिटबाल खेल सकते हैं। हमाई ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम कई एक्टिवेट कर सकते हैं।

जब हम किसी रस्ते पर या किसी सड़क पर चलते हैं तो हमारे लिए जूतों की या चप्पलों की आवश्यकता होती है।

यह हमारे देश का राष्ट्रीय तिरंगा है जोकि हमारी शान और हमारा मान है।

यह मिठाई बहोत अच्छी बनाते --

यह एक पर्चुने की दुकान है।

यह हप्ते में दो दिन लगायी जाती है।

यह एक पर्चुने की दुकान है।

जैसे ऑयल चीनी आटा --

यहाँ पर कार रिपेयरिंग होती हैं।